और एक सफेद पन्नी रखी हुई है।

इसके बाहर टीन भी पड़ी हुई है बराबर में।

उपर कांच भी लग रहा है।

यह एक गुरुकुल की तस्वीर है।